मेरे प्यारे देशवासियों आप सबको नमस्कार
आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करतेकरते तीन वर्ष पूरे हो गए हैं
आज ये 36वाँ एपिसोड है
मन की बात एक प्रकार से भारत की जो सकारात्मक शक्ति है देश के कोनेकोने में जो भावनाएँ भरी पड़ी हैं इच्छाएँ हैं अपेक्षाएँ हैं कहींकहीं शिकायत भी है एक जनमन में जो भाव उमड़ते रहते हैं मन की बात ने उन सब भावों से मुझे जुड़ने का एक बड़ा अद्भुत अवसर दिया और मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मेरे मन की बात है
ये मन की बात देशवासियों के मन से जुड़ी हैं उनके भाव से जुड़ी हैं उनकी आशाअपेक्षाओं से जुड़ी हुई हैं
और जब मन की बात में बातें मैं बताता हूँ तो उसे देश के हर कोने से जो लोग मुझे अपनी बातें भेजते हैं आपको तो शायद मैं बहुत कम कह पाता हूँ लेकिन मुझे तो भरपूर खज़ाना मिल जाता है
चाहे इमेल पर हो टेलीफोन पर हो माइगोव पर हो NarendraModiApp पर हो इतनी बातें मेरे तक पहुँचती हैं
अधिकतम तो मुझे प्रेरणा देने वाली होती हैं
बहुत सारी सरकार में सुधार के लिए होती हैं
कहीं व्यक्तिगत शिकायत भी होती हैं तो कहीं सामूहिक समस्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है
और मैं तो महीने में एक बार आधा घंटा आपका लेता हूँ लेकिन लोग तीसों दिन मन की बात के ऊपर अपनी बातें पहुँचाते हैं
और उसका परिणाम ये आया है कि सरकार में भी संवेदनशीलता समाज के दूरसुदूर कैसीकैसी शक्तियाँ पड़ी हैं उस पर उसका ध्यान जाना ये सहज अनुभव आ रहा है
और इसलिए मन की बात की तीन साल की ये यात्रा देशवासियों की भावनाओं की अनुभूति की एक यात्रा है
और शायद इतने कम समय में देश के सामान्य मानव के भावों को जाननेसमझने का जो मुझे अवसर मिला है और इसके लिए मैं देशवासियों का बहुत आभारी हूँ
मन की बात में मैंने हमेशा आचार्य विनोबा भावे की उस बात को याद रखा है
आचार्य विनोबा भावे हमेशा कहते थे असरकारी असरकारी
मैंने भी मन की बात को इस देश के जन को केंद्र में रखने का प्रयास किया है
राजनीति के रंग से उसको दूर रखा है
तत्कालीन जो गर्मी होती है आक्रोश होता है उसमें भी बह जाने के बजाय एक स्थिर मन से आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास किया है
मैं ज़रूर मानता हूँ अब तीन साल के बाद सोशल साइंटिस्ट्स यूनिवर्सिटीज रिसीच स्कॉलर्स मीडिया एक्सपर्ट्स ज़रूर इसका एनालिसिस करेंगे
प्लस्मिनस हर चीज़ को उजागर करेंगे
और मुझे विश्वास है कि ये विचारविमर्श भविष्य मन की बात के लिए भी अधिक उपयोगी होगा उसमें एक नयी चेतना नयी ऊर्जा मिलेगी
और मैंने जब एक बार मन की बात में कही थी कि हमें भोजन करते समय चिंता करनी चाहिये कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें हम उसको बर्बाद न करें
लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि देश के हर कोने से मुझे इतनी चिट्ठियाँ आयी अनेक सामाजिक संगठन अनेक नवयुवक पहले से ही इस काम को कर रहे हैं
जो अन्न थाली में छोड़ दिया जाता है उसको इकट्ठा करके उसका सदुपयोग कैसे हो इसमें काम करने वाले इतने लोग मेरे इतने ध्यान में आये मेरे मन को इतना बड़ा संतोष हुआ इतना आनंद हुआ
एक बार मैंने मन की बात में महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड टीचर श्रीमान् चन्द्रकान्त कुलकर्णी की बात कही थी जो अपने पेंशन में से सोलह हज़ार रूपये का पेंशन मिलता था उसमें से पाँच हज़ार रुपया वो 51 पोस्टडेटेड चेक देकर के स्वच्छता के लिये उन्होंने दान दे दिया था
और उसके बाद तो मैंने देखा कि स्वच्छता के लिए इस प्रकार के काम करने के लिए कितने लोग आगे आए
एक बार मैंने हरियाणा के एक सरपंच की सेल्फी विथ डॉगटर को देखा और मैंने मन की बात में सबके सामने रखा
देखते ही देखते न सिर्फ़ भारत में पूरे विश्व में सेल्फी विथ डॉगटर एक बड़ा अभियान चल पड़ा
ये सिर्फ़ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है
हर बेटी को एक नया आत्मविश्वास नया गर्व पैदा करने वाली ये घटना बन गयी
हर माँबाप को लगने लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ सेल्फी लूँ
हर बेटी को लगने लगा कि मेरा कोई माहात्म्य है मेरा कोई महत्व है
पिछले दिनों मैं भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठा था
मैंने जब टूर पर जाने वाले लोगों से कहा था कि आप इनक्रेडिबल इंडिया पर जहाँ भी जाएँ वहाँ की फोटो भेजिये
लाखों तस्वीरें भारत के हर कोने की एक प्रकार से टूरिज्म क्षेत्र में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी अमानत बन गयी
छोटीसी घटना कितना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर देती है ये मन की बात में मैंने अनुभव किया है
आज मन कर गया क्योंकि जब सोच रहा था तीन साल हो गये तो पिछले तीन साल की कई घटनायें मेरे मनमंदिर में छा गयीं
देश सही दिशा में जाने के लिए हर पल अग्रसर है
देश का हर नागरिक दूसरे की भलाई के लिए समाज की अच्छाई के लिए देश की प्रगति के लिए कुछनकुछ करना चाहता है ये मेरे तीन साल के मन की बात के अभियान में मैंने देशवासियों से जाना है समझा है सीखा है
किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ी पूँजी होती है एक बहुत बड़ी ताक़त होती है
मैं ह्रदय से देशवासियों को नमन करता हूँ
मैंने एक बार मन की बात में खादी के विषय में चर्चा की थी
और खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है
और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन भाँतिभाँति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों न हो घर में चादर हो रूमाल हो कर्टेन हो
अनुभव ये आया है कि युवापीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है
खादी की बिक्री बढ़ी है और उसके कारण ग़रीब के घर में सीधासीधा रोज़गारी का संबंध जुड़ गया है
2 अक्टूबर से खादी में डिस्काउंट दिया जाता है काफ़ी छूटरियायत मिलती है
मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा खादी का जो अभियान चला है उसको हम और आगे चलायें और बढ़ायें
खादी खरीद करके ग़रीब के घर में दिवाली का दीया जलायें इस भाव को लेकर के हम काम करें
हमारे देश के ग़रीब को इस कार्य से एक ताक़त मिलेगी और हमें करना चाहिए
और इस खादी के प्रति रुचि बढ़ने के कारण खादी क्षेत्र में काम करने वालो में भारत सरकार में खादी से संबंधित लोगों में एक नये तरीक़े से सोचने का उत्साह भी बढ़ा है
नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएँ उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएँ solarहथकरघे कैसे ले आएँ पुरानी जो विरासत थी जो बिलकुल ही 2020 2525 3030 साल से बंद पड़ी थीं उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए
उत्तर प्रदेश में वाराणसी सेवापुर में अब सेवापुरी का खादी आश्रम 26 साल से बंद पड़ा था लेकिन आज पुनर्जीवित हो गया
अनेक प्रकार की प्रवर्तियों को जोड़ा गया
अनेक लोगों को रोज़गार के नये अवसर पैदा किये
कश्मीर में पम्पोर में खादी एवं ग्रामोद्योग ने बंद पड़े अपने प्रशिक्षण केंद्र को फिर से शुरू किया और कश्मीर के पास तो इस क्षेत्र में देने के लिए बहुत कुछ है
अब ये प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू होने के कारण नई पीढ़ी को आधुनिक रूप से निर्माण कार्य करने में बुनने में नयी चीज़ें बनाने में एक मदद मिलेगी और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब बड़ेबड़े कॉर्पोरेट हाउस भी दिवाली में जब गिफ्ट देते हैं तो इन दिनों खादी की चीज़े देना शुरू किये हैं
लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में खादी की चीज़े देना शुरू किये हैं
एक सहज़ रूप से चीज़ कैसे आगे बढ़ती है ये हम सब अनुभव करते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले महीने मन की बात में ही हम सब ने एक संकल्प किया था और हमने तय किया था कि गाँधीजयंती से पहले 15 दिन देशभर में स्वच्छता का उत्सव मनायेंगे
स्वच्छता से जनमन को जोड़ेंगे
हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्य का आरंभ किया और देश जुड़ गया
अबालवृद्ध पुरुष हो स्त्री हो शहर हो गाँव हो हर कोई आज इस स्वच्छताअभियान का हिस्सा बन गया है
और जब मैं कहता हूँ संकल्प से सिद्धि ये स्वच्छताअभियान एक संकल्पसिद्धि की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं
हर कोई इसको स्वीकारता है सहयोग करता है और साकार करने के लिए कोई न कोई योगदान देता है
मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का तो आभार मानता हूँ लेकिन साथसाथ देश के हर वर्ग ने इसको अपना काम माना है
हर कोई इसके साथ जुड़ गया है
चाहे खेल जगत के लोग हों सिनेजगत के लोग हों एकेडमिशियन्स हों स्कूल हों कॉलेज हों यूनिवर्सिटी हों किसान हों मज़दूर हों अफ़सर हों बाबू हों पुलिस हों फौज के जवान हों हर कोई इसके साथ जुड़ गया है
सार्वजनिक स्थानों पर एक दबाव भी पैदा हुआ है कि अब सार्वजनिक स्थान गंदे हों तो लोग टोकते हैं वहाँ काम करने वालों को भी एक दबाव महसूस होने लगा है
मैं इसे अच्छा मानता हूँ और मेरे लिए ख़ुशी है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के सिर्फ पहले चार दिन में ही करीबकरीब 75 लाख से ज़्यादा लोग 40 हज़ार से ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर के गतिविधियों में जुड़ गए और कुछ तो लोग मैंने देखा है कि लगातार काम कर रहे हैं परिणाम लाकर के रहने का फैसला ले करके काम कर रहे हैं
इस बार एक और भी चीज़ देखी एक तो होता है कि हम कहीं स्वच्छता करें दूसरा होता है हम जागरूक रह करके गन्दगी न करें लेकिन स्वच्छता को अगर स्वभाव बनाना है तो एक वैचारिक आंदोलन भी ज़रुरी होता है
इस बार स्वच्छता ही सेवा के साथ कई प्रतियोगितायें हुईं
ढाई करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने स्वच्छता के निबंधस्पर्धा में भाग लिया
हज़ारों बच्चों ने पेंटिंग्स बनायी
अपनीअपनी कल्पना से स्वच्छता को लेकर के चित्र बनाये
बहुत से लोगों ने कवितायें बनायी और इन दिनों तो मैं सोशल मीडिया पर ऐसे जो हमारे नन्हें साथियों ने छोटेछोटे बालकों ने चित्र भेजे हैं वो मैं पोस्ट भी करता हूँ उनका गौरवगान करता हूँ
जहाँ तक स्वच्छता की बात आती है तो मैं मीडिया के लोगों का आभार मानना कभी भूलता नहीं हूँ
इस आंदोलन को उन्होंने बहुत पवित्रतापूर्वक आगे बढ़ाया है
अपनेअपने तरीक़े से वे जुड़ गए हैं और एक सकारात्मक वातावरण बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज भी वो अपनेअपने तरीक़े से स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं
हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश का प्रिंट मीडिया देश की कितनी बड़ी सेवा कर सकता है ये स्वच्छता ही सेवा आंदोलन में हम देख पाते हैं
अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ध्यान आकर्षित किया श्रीनगर के 18 साल के नौजवान बिलाल डार के संबंध में
और आपको जान करके ख़ुशी होगी कि श्रीनगर नगर निगम ने बिलाल डार को स्वच्छता के लिए अपना ब्रांड एम्बासाडोर बनाया है और जब ब्रांड एम्बासाडोर की बात आती है तो आपको लगता होगा कि शायद वो सिनेकलाकार होगा शायद वो खेलजगत का हीरो होगा जी नहीं
बिलाल डार स्वयं 1213 साल की अपनी उम्र से पिछले 56 साल से स्वच्छता में लग गया है
एशिया की सबसे बड़ी झील श्रीनगर के पास वहाँ प्लास्टिक हो पॉलिथीन हो यूज्ड बॉटल हो कूड़ाकचरा हो बस वो साफ़ करता रहता है
उसमें से कुछ कमाई भी कर लेता है
क्योंकि उसके पिता जी की बहुत छोटी आयु में कैंसर में मृत्यु हो गई लेकिन उसने अपना जीवन आजीविका के साथसाथ स्वच्छता के साथ जोड़ दिया
एक अनुमान है कि बिलाल ने सालाना 12 हज़ार किलो से ज़्यादा कूड़ाकचरा साफ़ किया है
श्रीनगर नगर निगम को भी मैं बधाई देता हूँ कि स्वच्छता के प्रति इस पहल के लिए और एम्बासाडोर के लिए उनकी इस कल्पना के लिए क्योंकि श्रीनगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हिन्दुस्तान का हर नागरिक श्रीनगर जाने का मन करता है उसका और वहाँ सफ़ाई को इतना बल मिले ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है
और मुझे ख़ुशी है कि उन्होंने बिलाल को सिर्फ ब्रांड एम्बासाडोर बनाया ऐसा नहीं है सफ़ाई करने वाले बिलाल उसको निगम ने इस बार गाड़ी दी है यूनिफॉर्म दिया है और वो अन्य इलाक़ों में भी जाकर के लोगों को स्वच्छता के लिए शिक्षित करता है प्रेरित करता है और परिणाम लाने तक पीछे लगा रहता है
बिलाल डार आयु छोटी है लेकिन स्वच्छता में रुचि रखने वाले हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है
मैं बिलाल डार को बहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि भावी इतिहास इतिहास की कोख में जन्म लेता है और जब इतिहास की बात आती है तो महापुरुष याद आना बहुत स्वाभाविक है
ये अक्तूबर महीना हमारे इतने सारे महापुरुषों को स्मरण करने का महीना है
महात्मा गाँधी से लेकर के सरदार पटेल तक इसी अक्तूबर में इतने महापुरुष हमारे सामने हैं कि जिन्होंने 20वीं सदी और 21वीं सदी के लिए हम लोगों को दिशा दी हमारा नेतृत्व किया हमारा मार्गदर्शन किया और देश के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले
दो अक्तूबर को महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है तो 11 अक्तूबर को जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जन्मजयंती है और 25 सितम्बर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मजयंती है
नानाजी और दीनदयाल जी की तो ये शताब्दी का भी वर्ष है
और इन सभी महापुरुषों का एक केंद्रबिंदु क्या था एक बात कॉमन थी और वो देश के लिए जीना देश के लिए कुछ करना और मात्र उपदेश नहीं अपने जीवन के द्वारा करके दिखाना
गाँधी जी जयप्रकाश जी दीनदयाल जी ये ऐसे महापुरुष हैं जो सत्ता के गलियारों से कोसो दूर रहे हैं लेकिन जनजीवन के साथ पलपल जीते रहे जूझते रहे और सर्वजन हितायसर्वजन सुखाय कुछनकुछ करते रहे
नानाजी देशमुख राजनीतिक जीवन को छोड़ करके ग्रामोदय में लग गए थे और जब आज उनका शताब्दीवर्ष मनाते हैं तो उनके ग्रामोदय के काम के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल कलाम जी जब नौजवानों से बात करते थे तो हमेशा नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास की बातें किया करते थे
बड़े आदर से उल्लेख करते थे और वो स्वयं भी नानाजी के इस काम को देखने के लिए गाँव में गए थे
दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महात्मा गाँधी समाज के आखिरी छोर में बैठे हुए इंसान की बात करते थे
दीनदयाल जी भी समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए ग़रीब पीड़ित शोषित वंचित की ही और उसके जीवन में बदलाव लाने की शिक्षा के द्वारा रोज़गार के द्वारा किस प्रकार से बदलाव लाया जाये इसकी चर्चा करते थे
इन सभी महापुरुषों को स्मरण करना ये उनके प्रति उपकार नहीं है ये महापुरुषों का स्मरण इसलिए करते हैं कि हमें आगे का रास्ता मिलता रहे आगे की दिशा मिलती रहे
अगले मन की बात में मैं जरुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में कहूँगा लेकिन 31 अक्तूबर पूरे देश में रुन फोर यूनिटी एक भारतश्रेष्ठ भारत
देश के हर शहर में हर नगर में बहुत बड़ी मात्रा में रुन फोर यूनिटी के कार्यक्रम होने चाहिए और मौसम भी ऐसा है कि दौड़ने का मज़ा आता है सरदार साहब जैसी लौहशक्ति पाने के लिए ये भी तो ज़रुरी है
और सरदार साहब ने देश को एक किया था
हमने भी एकता के लिए दौड़ करके एकता के मंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए
हम लोग बहुत स्वाभाविक रूप से कहते हैं विविधता में एकता भारत की विशेषता
विविधता का हम गौरव करते हैं लेकिन क्या कभी आपने इस विविधता को अनुभव करने का प्रयास किया है क्या मैं बारबार हिंदुस्तान के मेरे देशवासियों से कहना चाहूँगा और ख़ास करके मेरी युवापीढ़ी को कहना चाहूँगा कि हम एक जागृतअवस्था में हैं
इस भारत की विविधताओं का अनुभव करें उसको स्पर्श करें उसकी महक को अनुभव करें
आप देखिये आपके भीतर के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हमारे देश की ये विविधतायें एक बहुत बड़ी पाठशाला का काम करती है
वैकेशन है दिवाली के दिन है हमारे देश में चारों तरफ कहींनकहीं जाने का स्वभाव बना हुआ है लोग जाते हैं टूरिस्ट के नाते और बहुत स्वाभाविक है
लेकिन कभीकभी चिंता होती है कि हम अपने देश को तो देखते नहीं हैं देश की विविधताओं को जानते नहीं समझते नहीं लेकिन चकाचौंध के प्रभाव में आकर के विदेशों में ही टूर करना पसंद करना शुरू किये हैं
आप दुनिया में जायें मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन कभी अपने घर को भी तो देखें उत्तरभारत के व्यक्ति को पता नहीं होगा कि दक्षिणभारत में क्या है पश्चिमभारत के व्यक्ति को पता नहीं होगा कि पूर्वभारत में क्या है हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है
महात्मा गाँधी लोकमान्य तिलक स्वामी विवेकानंद हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बार बात आती है कि जब उन्होंने भारतभ्रमण किया तब उनको भारत को देखनेसमझने में और उसके लिए जीनेमरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली
इन सभी महापुरुषों ने भारत का व्यापक भ्रमण किया
अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया
भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की
क्या हम हमारे देश के भिन्नभिन्न राज्यों को भिन्नभिन्न समाजों को समूहों को उनके रीतिरिवाजों को उनकी परम्परा को उनके पहर्वेश पहनावे को उनके खानपान को उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का समझने का जीने का प्रयास कर सकते हैं
टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ़ मुलाक़ाती नहीं हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पानासमझनाबनने का प्रयास करें
मेरा स्वयं का अनुभव है मुझे हिंदुस्तान के पाँच सौ से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौक़ा मिला होगा
साढ़े चार सौ से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहाँ मुझे रात्रिमुक़ाम का अवसर मिला है और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभाल रहा हूँ तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है
चीजों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है
आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को विविधता में एकता सिर्फ़ नारा नहीं हमारी अपारशक्ति का ये भंडार है इसको अनुभव कीजिये
एक भारतश्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है
खानपान की कितनी वेराइटीज हैं पूरे जीवन भर हर दिन एकएक नई वेरिएटी अगर खाते रहें तो भी रिपिटिशन नहीं होगा
अब ये हमारी टूरिज्म की बड़ी ताक़त है
मैं आग्रह करूँगा कि इस छुट्टियों में आप सिर्फ घर के बाहर जाएँ ऐसा नहीं चंगे के लिए निकल पड़ें ऐसा नहीं कुछ जानने समझनेपाने के इरादे से निकलिए
भारत को अपने भीतर आत्मसात् कीजिये
कोटिकोटि जनों की विविधताओं को भीतर आत्मसात् कीजिये
इन अनुभवों से आपका जीवन समृद्ध हो जायेगा
आपकी सोच का दायरा विशाल हो जायेगा
और अनुभव से बड़ा शिक्षक कौन होता है सामान्य तौर पर अक्तूबर से मार्च तक का समय ज्यादातर पर्यटन का रहता है
लोग जाते हैं
मुझे विश्वास है कि इस बार भी अगर आप जायेंगे तो मेरे उस अभियान को और आगे बढ़ायेंगे
आप जहाँ भी जाएँ अपने अनुभवों को शेयर कीजिये तस्वीरों को शेयर कीजिये
इनक्रेडिब्लेइंडिया हैश टैग इनक्रेडिब्लेइंडिया इस पर आप फ़ोटो ज़रुर भेजिए
वहाँ के लोगों से मिलना हो जाये तो उनकी भी तस्वीर भेजिए
सिर्फ़ इमारतों की नहीं सिर्फ़ प्राकृतिक सौन्दर्य की नहीं वहाँ के जनजीवन की कुछ बातें लिखिए
आपकी यात्रा के अच्छे निबंध लिखिए
माइगोव पर भेजिए NarendraModiApp पर भेजिये
मेरे मन में एक विचार आता है कि हम भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या आप अपने राज्य के सात उत्तम से उत्तम टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं हर हिन्दुस्तानी को आपके राज्य के उन सात चीज़ों के विषय में जानना चाहिये
हो सके तो उन सात स्थानों पर जाना चाहिये
आप उसके विषय में कोई जानकारी दे सकते हैं क्या NarendraModiApp पर उसको रख सकते हैं क्या इनक्रेडिब्लेइंडिया हैश टैग इनक्रेडिब्लेइंडिया पर रख सकते हैं क्या आप देखिये एक राज्य के सब लोग ऐसा बतायेंगे तो मैं सरकार में कहूँगा कि वो उसको स्क्रूटिनी करे और कॉमन कौनसी सात चीज़े हर राज्य से आई हैं उस पर वो प्रचारसाहित्य तैयार करें
यानि एक प्रकार से जनता के अभिप्रायों से टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बढ़ावा कैसे हो उसी प्रकार से आपने जो चीजें देखी हैं देशभर में उसमें से सात आपको जो अच्छे से अच्छी लगी हैं आप चाहते हैं कि किसीनकिसी ने तो इसको देखनी चाहिये जाना चाहिये उसके विषय में जानकारी पानी चाहिये तो आप आपकी पसंद की सात ऐसे स्थान का भी माइगोव पर NarendraModiApp पर ज़रूर भेजिये
भारत सरकार उस पर काम करेगी
ऐसे उत्तम डेस्टिनेशन जो होंगे उसके लिए फिल्म बनाना वीडियो बनाना प्रचारसाहित्य तैयार करना उसको बढ़ावा देना आपके द्वारा चुनी हुई चीज़ों को सरकार स्वीकार करेगी
आइये मेरे साथ जुड़िये
इस अक्तूबर महीने से मार्च महीने तक का समय का उपयोग देश के टूरिज्म को बढ़ाने में आप भी एक बहुत बड़े कैटलिस्ट एजेंट बन सकते हैं
मैं आपको निमंत्रण देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो एक इन्सान के नाते बहुतसी चीजें मुझे भी छू जाती हैं
मेरे दिल को आंदोलित कर जाती हैं
मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं
आख़िर मैं भी तो आप ही की तरह एक इन्सान हूँ
पिछले दिनों एक घटना है जो शायद आपके भी ध्यान में आयी होगी महिलाशक्ति और देशभक्ति की अनूठी मिसाल हम देशवासियों ने देखी है
इंडियन आर्मी को लेफ्टिनेंट स्वाति और निधि के रूप में दो वीरांगनाएँ मिली हैं और वे असामान्य वीरांगनाएँ है
असामान्य इसलिए हैं कि स्वाति और निधि माँभारती की सेवा करतेकरते उनके पति शहीद हो गए थे
हम कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी आयु में जब संसार उजड़ जाये तो मनस्थिति कैसे होगी लेकिन शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक इस कठिन परिस्थितियों का मुक़ाबला करते हुए उसने मन में ठान ली
और वे भारत की सेना में भर्ती हो गयीं
11 महीने तक उसने कड़ी मेहनत करके प्रशिक्षण हासिल किया और अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी ज़िन्दगी झोंक दी
उसी प्रकार से निधि दुबे उनके पति मुकेश दुबे सेना में नायक का काम करते थे और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए तो उनकी पत्नी निधि ने मन में ठान ली और वे भी सेना में भर्ती हो गयीं
हर देशवासी को हमारी इस मातृशक्ति पर हमारी इन वीरांगनाओं के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है
मैं इन दोनों बहनों को हृदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
उन्होंने देश के कोटिकोटि जनों के लिए एक नयी प्रेरणा एक नयी चेतना जगायी है
उन दोनों बहनों को बहुतबहुत बधाई
मेरे प्यारे देशवासियो नवरात्रि का उत्सव और दिवाली के बीच हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है
फिफा under17 का वर्ल्डकप हमारे यहाँ हो रहा है
मुझे विश्वास है कि चारों तरफ़ फुटबाल की गूँज सुनाई देगी
हर पीढ़ी की फुटबाल में रूचि बढ़ेगी
हिन्दुस्तान का कोई स्कूल कॉलेज का मैदान ऐसा न हो कि जहाँ पर हमारे नौजवान खेलते हुए नज़र न आयें
आइये पूरा विश्व जब भारत की धरती पर खेलने के लिए आ रहा है हम भी खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनायें
मेरे प्यारे देशवासियो नवरात्रि का पर्व चल रहा है
माँ दुर्गा की पूजा का अवसर है
पूरा माहौल पावन पवित्र सुगंध से व्याप्त है
चारों तरफ़ एक आध्यात्मिकता का वातावरण उत्सव का वातावरण भक्ति का वातावरण और ये सब कुछ शक्ति की साधना का पर्व माना जाता है
ये शारदीयनवरात्रि के रूप में जाना जाता है
और यहीं से शरदऋतु का आरंभ होता है
नवरात्रि के इस पावनपर्व पर मैं देशवासियों को अनेकअनेक शुभकामनायें देता हूँ और माँशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि देश के सामान्यमानव के जीवन की आशाआकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा देश नई ऊँचाइयों को प्राप्त करे
हर चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देश को आए
देश तेज़ गति से आगे बढ़े और दो हज़ार बाईस 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल आज़ादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने का प्रयास सवासौ करोड़ देशवासियों का संकल्प अथाह मेहनत अथाह पुरुषार्थ और संकल्प को साकार करने के लिए पांच साल का रोड एमएपी बना करके हम चल पड़े और माँ शक्ति हमे आशीर्वाद दे
आप सब को बहुतबहुत शुभकामनाएँ
उत्सव भी मनायें उत्साह भी बढ़ायें
बहुतबहुत धन्यवाद